और ऊपर में डिजिटल लाइट है।

और बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में है।

ये एक फोटो है किसी रेस्टोरेंट का।

गमले में एक पौधा लगा हुआ है।

ऊपर एक पंखा है।

कॉलेज के बाहर का --

बोहोत सारे लोग हैं ।

छोटा सा रोड है ।

जंगल दिखाई दे रहा है ।

ब्लू रंग का एक बाइक है ।

अंदर बहुत सारा --

ये एक फोटो है ।

दिखाई दे रही है ।

एक गेट भी दिखाई दे रहा है ।

ये एक फोटो है ।

यह एक फोटो है।

यह फोटो किसी मीटिंग का दिखाई दे रहा है।

पीले रंग का दीवाल है।

बहुत सारे हरे भरे घास है।

एक झोंपड़ी लगा हुआ है।

बोहोत सारे घर हैं।

किसी डांस क्लास का और--

और दो स्पीकर --

यह एक फोटो है।

किसी पार्क का और--

एक बैनर लगाया हुआ है ।

यह एक फोटो है।

और ऊपर पंखे भी लगे हैं।

किसी एनिमल हॉस्पिटल का--

डॉग को लेकर बैठी हुई है ।

किसी दुकान के बाहर का --

और यहां पर--

लकड़ी का गोल टेबल है।

दो जानवर दिखाई दे रहे हैं ।

नदी का पानी साफ दिखाई दे रहा है।

किसी स्टेट बैंक ए_टी_एम का --

यह एक फोटो है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बोहोत सारे पेड़-पौधे --

और कुछ सीढ़ियां भी है ।

यह फोटो किसी योगा क्लास का है।

पानी का बोतल दिखाई दे रहा है।

और पीछे ए_सी लगा हुआ है।

और एक सोफा रखा हुआ है।

बहुत सारे लोग हैं ।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं ।

किसी कपड़े का दुकान का है।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है ।

वाइट रंग का एक कार्ड है ।

पीछे के तरफ बड़ा सा खेत है ।

दो रिक्शा लगा हुआ है ।

और पीछे में बहुत सारे सामान --

यह फोटो रोड साइड का है ।

और बहुत सारे सड़कें हैं ।

लोगों का भीर है ।

किसी म्यूजिक क्लास का है।

लाल कारपेट बिछा हुआ है।

बगल में एक दुकान भी है ।

पुल भी बना हुआ है ।

छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं।

बड़ा सा बिल्डिंग है।

किसी घर के बाहर का है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

किसी होटल का है।

काउंटर पर एक हेलमेट भी --

किसी हॉल के बाहर का है ।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

किसी पार्क का है।

यह फोटो किसी तालाब का है।

खिड़की दिखाई दे रहा है ।

किसी कैफे के बाहर का है।

और बहुत सारे कार्टूनस भी--

और लाइट्स लगे हुए हैं।